इस इमेज में हमे एक माता की मूर्ति दिखाई दे रही मूर्ति के सिर पर हमें एक मुकुट दिखाई दे रहा है जो गोल्डन रंग का है।

इस इमेज में हमे एक ईमारत दिखाई दे रही है इमारत सफ़ेद रंग की है उसमे हमे एक गेट भी दिख रहा है और इमारत के सामने हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के अन्दर हमे कुछ लोग बैठे हुवे दिखाई दे रहे है उन्होंने अपने सिर पर टोपी पहनी हुई है जो सफ़ेद रंग की है और नीचे कार्पेट दिखाई दे रहा हे।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग सफ़ेद रंग की बिल्डिंग में हमें नीले रंग की कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है बाजार में हमें दुकान दिखाई दे रही है एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहर हमें सफेद रंग की बोरी रखी हुई दिख रही है।

इस इमेज मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बहार हमे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है और कुछ बोतल और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

इमारत के सामने हमे बाइक रखी हुई दिखाई दे रही है और सामने कुछ बकेट रखी हुई भी दिख रही है।

उसके पास मे हमे एक गेट भी दिख रहा है जो ब्राउन रंग का है और सामने रास्ता दिखाई दे रहा है।